रूम पर एक ऐ_सी भी लगाया गया है जो वाइट कलर का है ऊपर पे बहुत सारी लाइट लगाया गया है यहां पे मोटर बहुत सारे हैं।

इस पे बहुत सारी खिड़कियां बनाया गया है एक पंखी भी दिख रहा है नीचे की ओर बहुत सारे आब्दीन भी हैं।

यह एक रूम है रूम है जो वाइट और रेड कलर से पेंट किया हुआ है।

यह एक दुकान है दुकान है जो व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है तीन बोर्ड इसपे लगाया गया है।

यह एक दीवार है दीवार है जो व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है एक स्विच बोर्ड भी लगाया हुआ है।

वाइट रंग से पेंट किया हुआ है हरे रंग से भी यहां पे बहुत सारे बैलून लगाया हुआ है।

इधर एक जाली भी लगाया हुआ जो लोहे का जाली होता है इधर छोटे मोटे खीजूर का पेड़ तरी भी पेड़ लगाया हुआ है।

एक तालाब भी है एक पोल खंभे भी हैं उस पे तार भी गींचा हुआ है उधर बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

डिजाइन मार के दो दुकान बनाया हुआ है नीचे बहुत सारे सामान रखा हुआ है।

फ्रिज भी रखा हुआ है जो ब्लैक कलर का है यहाँ पे एक से दो लोग आपदिन है।

मिटी के से पेंट किया हुआ है इसका यहां पर तीन से चार लोग हैं ऐनक भी लगाया हुआ--

जो है प्लास्टिक पर रखा हुआ है यहां पे एक प्लाई का बेंच बनाया गया है जो ब्लू रंग का है।

चार से पांच कुर्सियां हैं कुर्सियों का रंग रेड कलर का है एक लड़की आई हुई है इलाज करने के लिए।

पेड़ पौधे भी हैं नीचे मारकर भी बिछाया हुआ है।